इस फोटो में हमें काफी सारी भीड़ दिखाई दे रही है।

पीछे और कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह फोटो किसी ज्वेलरी शॉप से लिया गया है इसमें हमें एक काउंटर पर एक कॉपी रखी हुई दिखाई दे रही है जो खुली हुई रखी हुई है।

दो अलग अलग रंग के बॉक्स से में रखे हुए है।

जिसमे हमें सामने की साइड एक लंबी मकान दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में हमें सामने की साइड एक झरना बहता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें वह कुछ व्यक्ति स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं तथा कुछ टूटे फूटे पत्थरों के ऊपर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

वह दिखाई दे रहा है व्यक्ति व्यक्ति ने सफेद रंग की टी शर्ट और ब्लैक रंग की जीन्स पहन रखी है।

तथा अल अलग अलमारी में अलग अलग बॉक्स में कुछ सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा--

और एक बच्चा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिसने क्रीम रंग की शर्ट और गुलाबी रंग का कच्छा पहना है।

इस फोटो में हमें सामने की साइड एक कार एक खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

कार को कच्चे मैदान पर खड़ा किया गया--

एक फैक्ट्री दिखाई दे रही है इस पर एक लंबा बोर्ड लगा हुआ दिखाइ दे रहा है।

इसके फेस को ब्लर किया गया है।

फोटो में हमें सामने की साइड --

इस पर टंकी है और पाइप टूंटी वगैरा मिलती है।

जिसपर श्री गणेश ट्रेड्स लिखा हुआ है।

इस फोटो में हमें सामने की साइड भीड़ बाढ़ जैसा इलाका दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में हमें एक जाल पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

बल्ब लगाया गया है जिसकी काफी सारी रोशनी पड़ रही है।

टेंट जैसा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ सोफे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

साइड में खाने का स्टाल लगा हुआ है जिस पर एक गैस का चूल्हा भी रखा हुआ दिखाई दे रहा--

मस्जिद के सामने एक सड़क जाती हुई दिखाई दे रही है बराबर में कच्चा मैदान--

सामने एक कांच जैसा लगा हुआ कुछ दिखाई दे रहा है बराबर में भी कुछ कुर्सियां पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

इस फोटो में हमें सामने की साइड एक लड़की बैठी हुई दिखाई दे रही है जो पेंटिंग बना रही है।

जिसका नाम व्रधामान वर्धमान हॉस्पिटल है।